अह बेंच के ऊपर बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं जो मरी हुई है।

दीवार लगी हुई है छोटे छोटे पौधे हैं पौधे में फूल लगे हुए है सामने घर है घर के आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है।